इस पर ऊपर बहुत ही अच्छे किस्म की लाइटिंग लगी हुई है ।

नमस्ते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसका पिलर जिसकी।

कुछ नागरिक पुल के ऊपर खड़े पिक्चर को इस इस सीन को अपनी मोबाइल के अंदर कैद कर रहे हैं और कुछ --

नमस्ते ये एक सुन्दर किस्म का चौक है जहाँ पे ढेरो नागरिक जमा है।

देखने के लिए नागरिक दूर द्रास से आते हैं एक हरे हरे रंग के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

सामान लेने के लिए आए हुए हैं एक नागरिक ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और हवाई चप्पल पहने हैं।

बाइक जहाँ ये पार्क की गई है बाइक के अपोजिट साइड पर।

बहुत ही खूबसूरत जंगल है जंगल की दूसरी साइड पर बहुत ही अच्छा पहाड़ है।

नमस्ते ये एक इलेक्ट्रिक --

नमस्ते यहां पर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है हॉल में काफी लोग।

प्रोटेक्टर लगा हुआ है और कुछ नागरिक आपस में बातचीत भी कर रहे है नागरिक बहुत खूबसूरत लग रहे है।

यहाँ पर सी ब्रिज का पानी इकठ्ठा है और एक एक्सीवेटर से इस पानी को ।

मछलियां हैं जो के अलग किस्म की हैं और कहीं किस्मों की हैं और साथ मैं केकड़े भी पड़े हुए हैं नागरिक उनका शिकार करके आए हैं।

ये एक स्टेशनरी दुकान है जहाँ किताब भी कॉपियाँ।

मर्गोल अच्छे किस्म का इस्तेमाल किया गया है कुछ शॉप्स ओपन है कुछ शॉप्स क्लोज है।

ग्रीन कलर का कार्पेट बिछाया गया है और साथ में डीजे का भी निजाम बनाया हुआ है और कुछ महिलाएं।

टोटली स्टॉल लगे हुए हैं। जिसको जो चाहिए वो ले रहा है।

और बाईं तरफ इसकी एक बिल्डिंग हैं बिल्डिंग के ऊपर राल लाल और सफ़ेद कलर का कलर किया हुआ हैं।

जो भी नागरीक अपने बच्चों को यहां एडमिशन करवाने आए यहां बहुत ही अच्छी किस्म का है ये स्कूल और सामने।

और नागरिक आते है अपनी मनपसंद की यहाँ से फ्लावर लेकर चले जाते है।

जंगल की दूसरी साइड पर दूर से देखने पर बिल्डिंग नजर आ रही है जो बेइंतहाई खूबसूरत है।

नमस्ते यह एक बहुत ही अच्छे किस्म की बिल्डिंग है और बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है ।